अलमारियों के ऊपर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है काँच का जहाँ पर बहोत सारे कपड़े लटक रहें हैं। अंदर आने के लिए जगह बनी हुई हैं। ज़मीन के ऊपर प्लास्टर --

एक चाट का ठेला है सामने की तरफ एक के अंदर बोहोत सारे छोले रखे हुए हैं जिनके ऊपर धनिया डला हुआ है | एक स्टील का चम्मच रखा हुआ है एक आदमी एक हाथ में वो चाट है जिसके ऊपर प्याज डली हुई है।

बोहोत बड़ा पार्क है यहाँ पर बोहोत कम घास लागी हुई है | एक पाइप यहाँ से वहाँ लंबा लगा हुआ है जाता हुआ नजर आ रहा है।

सड़क बनी हुई है लोहे का खंबा बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाला इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वायरस निकल रहे हैं। ]

सफेद कलर का पेंट है लोग इस कमरे में से अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं भीड़ हो रही है। यहाँ साइड में बहुत सारी कैन्डिल्स जला रहे हैं।